चित्र में मुझे कई सारे लोग खड़े हुए--

चित्र में मुझे बच्चों के कपड़े टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

चित्र में मुझे एक बड़ा बरांडा दिख रहा हैं।

चित्र में मुझे एक लड़का ब्लैक कपड़ों पे दिखाई दे रहा है।

चित्र में मुझे घर बने हुए कुटिया सी दिख रहें हैं चित्र में मुझे कई पेड़ दिख रहें हैं।

चित्र में मुझे कई सारे लोग गाड़ी पर बैठे हुए दिख रहें हैं और चित्र में मुझे गाड़ी पे--

पेन पेंसिल के डब्बे रखे हुए दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे एक लड़का बैठा हुआ दिख रहा है।

चित्र में मुझे कई सारी महिलाएं खड़ी हुई--

चित्र में मुझे एक थान की कपड़े की शॉप दिख रही है।